यह एक ऑफिस है और यहां पर लकड़ी के फ्रेम के बहुत सारे काउंटरस रखे हुए हैं।

जिनके ऊपर रेड और व्हाइट कलर से पेंट है।

और इसकी किनारो पर हरे कलर की ग्रिले लगी हुई हैं जो लोहे की --

यह एक चर्च है और यहां पर बहोत सारे लोग खड़े हैं।